यहां पर औली नाम है कैफे का यहां पे लिखा है चाई एस मंच --

पाँच बच्चे दिख रहे हैं पांच-छे बच्चे दिख रहे हैं।

यहां पर एस.बी.आई की बैंक दिखाई दे रही है।